इस इमेज मे डायमंड एक्वा वॉटर पार्क को दिखाया जा रहा है।

और उसके ऊपर अनेक प्रकार की लाइट लगाई गई हैं।

जिम के पीछे साइड में मिरर भी लगाई है।

और अगल बगल में बहोत सारी बाइक और कारें लगी हुई है यहां--

और ए_टी_एम के जो बाहर का दीवाल है वो लाल रंग से रंगा गया है।

जैसे कलम कॉपी और कलर पेंसिल --

में एक खुले से खुले हुए मैदान को दिखाया गया है।

और यहां पर मैदान में एक ऑरेंज कलर का टेंट भी लगा हुआ है।

और यहां पर लाल और काले कलर की कुर्सियां भी लगी हुई है।

और दूसरे का व्हाइट एंड ब्लैक से कुछ नीचे साइड में आकृति बनाई है।

और बाहर साइड में तीन आदमी टहल रहे--

और चबूतरे पे चहलने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है।

और उस मूर्ति को ढकने के लिए कुछ पिलर बनाकर छांव रखने के लिए बनाई गई है।

उसके पीछे अनेक प्रकार की बिल्डिंग है और एक टावर लगाया गया है।

इमेज मे एक हॉल को दिखाया जा रहा है और उस हाल की जो छत की कलर है वो काले रंग से रंगी गई है।

और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं।

नीचे में कुछ औरतें और कुछ लड़के नृत्य सीख रहे हैं और उस--

बिल्डिंग के बाहर साइड में एक नारियल का पेड़ है और उसके बगल में एक कचड़ा ले जाने वाला वैन लगा हुआ है।

और बाहर साइड में एक छोटी सी बैरीकेडिंग करके वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए है।

और उसके ऊपर सफेद रंग की करकट लगाई गई है।

ताने बाजार की सामने की दुकान है।

इस इमेज में एक घर को बनते हुए दिखाया जा रहा है।

और उसके आगे में हरी कलर की जाली से बैरिकेडिंग लगाया गया है।

और उसके जस्ट बगल में एक डस्टबिन भी लगी हुई है।

उसके पीछे साइड में कुछ पर्दो से सजाकर रखा गया है।

इसमें रॉयल कैफे के बाहर साइड को दिखाया गया है।

और उसके अंदर अनेक प्रकार के फूल के पौधे लगे हुए हैं।

और उसके अंदर अनेक प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं उसके अगल बगल में पेड़ पौधे बड़े बड़े लगे हुए हैं।

और उसके अगल बगल पेड़ पौधे हैं और खाली खेत खारियान है।

और उसके बगल में कुछ लाल कलर के गमले में भी पेड़ लगे हुए हैं।

उसके बाहर साइड में एक आदमी बाइक लेकर जा रहा है।

वे बड़े से हॉल को दिखाया गया है उस हॉल की जो छत की कलर है वो सफेद रंग से रंगी गई है और --

जो की कपड़े के दुकान की जो रैक है वो सफेद रंग से रंगी हुई है।

काले पीले और लाल कलर के डिब्बे में सजाकर रखा गया है।

इमेज में एक पेट्रोल पंप को दिखाया गया है।

उसके अगल बगल लाइट भी लगाई गई है।

उसके नीचे में बैठने के लिए अनेक सारे टेबल और चेयर लगे हुए हैं सजा कर।

बहुत ही प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे भी मिलते हैं।

बाहर साइड में बाइक भी लगी हुई है।